इस चित्र में दिखाया गया है कि बहुत सारे पेंटिंग्स फोटोस लगे हुए हैं।

चार पांच छह बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं।

जो की एक स्थान पर बैठा हुआ है।

इस चित्र में कुछ कार्यक्रम का दृश्य दिखाया गया है।

एक लड़के का परछाई भी दिख रहा है यहां पर।

एक लड़का उस तालाब का फोटो निकाल रहा है।

पानी का लहर भी दिख रहा है।